इस तस्वीर मे हम देख सखते है यहा पर हमे कुछ हाथीया दिखाई रही है जो की हाथीयो के सूंड मे से हमे फवारा बनते दिखाई दे रहा है यहा हाथी हमे काला कलर का बनाया दिखाई दे रहा है यहा पे हमे आर्टिफ़िश्यल बना दिखाई दे रहा है यहा पे हमे पानी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

आसपास हमे हरीभरी घास दिखाई दे रही है यहाँ पर सुखी झाड़ियाँ दिखाई दे रही है खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हम देख सखते है यहा पर हमे सब्जी मार्केट दिखाई दे रहे है यहा पर हमे बहुत सारी सब्जिया दिखाई दे रही है यहा पर हमें अनार दिखाई दे रहे है यहा पर हमे कच्चे आम दिखाई दे रहे है यहा पर हमे --

तस्वीर मे हम देख सकते है यहाँ पर हमे मगरमछ दिखाई दे रहे यहाँ पर हमे अ कुछ पानीका तलाब जैसा दिखाई दे रहा जोकि आर्टिफ़िशियल बना दिखाई दे रहा मगरमछ काफी सारे दिखाई दे रहे कुछ पानी के अंदर कुछ बाहर दिखाई दे रहे।

हमें यहाँ पर देख सकते है यहाँपर हमे मिट्टी दिखाई दे रही है पौधा दिखाई दे रहा जिसके उपर फल लगे दिखाई दे रहे यहाँपे इसकी हरी भरी पत्तिया दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे मिट्टियाँ दिखाई दे रही इसके उपर हमे कोई लाल कलर इसमे हरे फल दिखाई दे रहे यहाँ पर हमे एक धूप की रोशनी आते दिखाई दे रही यहाँ पर हमे परछाई भी दिखाई दे रही यहाँ पर हमे पौधो की--

खिड़की दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रही दीवार का रंग हमे सफ़ेद लाल और ब्लू रंग का दिखाई दे रहा यहा पे हमे एक गमला भी दिखाई दे रहा है यहा पे हमे पन्ने दिखाई दे रही कॉफी बॉक दिखाई दे रहे यहा पे हमे टीचर का हात दिखाई --

इस तस्वीर मे हम देख सकते यहाँ पे हमे कॉरीडोर मे कुछ बच्चे बैठे दिखाई दे रहे। यहाँ पर हमे गमले दिखाई दे रहे पौधे दिखाई दे रहे। यहाँ पर बडे बड़े जालिया दिखाई दे रहे यहाँ पे हमे टीचर ने ब्लू रंग की साड़ी दिखाई दे रही जोकि बच्चों की हेल्प करते दिखाई दे रही। यहा पर हमे--